एक टहनी पर अमरुद लगा है और एक व्यक्ति का हाथ है जिसने अमरुद की टहनी को पकड़ा हुआ है ।

और उस दुकान के ऊपर एक नीले रंग का बोर्ड है जिस पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ट्वेंटी फोर ऑवरस ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

जहाँ पर चार कन्याएं नृत्य करती और सिखाती दिखाई दे रहीं हैं।

सजाने के लिए सफेद और लाल गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया है।

इस फोटो में पार्क का एक छोटा सा दृश्य है हरी घास पर एक व्यक्ति टहलता दिख रहा है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

एक दुकान के ऊपर राज शू कलेक्शन लिखा है एक पीली रंग की गाड़ी खड़ी है ।

इस फोटो में हमें पुरुष सैलून का एक दृश्य दिख रहा है जिसमें बाहर की तरफ एक व्यक्ति टी-शर्ट और जींस पहने फोटो खिंचवा रहा है ।

इस फोटो में किसी आवासीय दीवार को अंदर की तरफ से दर्शाया गया है।

इस दुकान के ऊपरी भाग पर के.डब्लू.डब्लू. एल.ई.डी. लिखा है।

इस फोटो में सड़क के कोने पर दो शेयरिंग को ऑटो को खड़ा दिखाया गया है।

जिस पर ताला लगा है और भवन के ऊपरी भाग पर उप डाकघर सीतामढ़ी बाजार लिखा हुआ है बाहरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।